यहां भगवान का पूजा करने आए हैंऔर यहाँ कोई लगता है कोई यहां पे आ--

यहाँ भी भी लकड़ी लकड़ी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे व्होलसेलर बहुत बड़ा व्होलसेलर है। यहाँ पर लकड़ी भी दिखाई देता है।